एक ने लाल रंग का साड़ी पहने रखी है और लाल रंग की चूड़ी पेहन रखी है।

पैसा निकलने के लिए एक औरत पीली रंग की साड़ी पेहेन के खड़ी है।

नीले और लाल रंग का बोर्ड लगा हुआ है जिसपे सफ़ेद रंग से सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया --

जो भगवान को प्रणाम कर रहे हैं |

सैलून जो नाम लिखा हुआ है ऊपर में।

यह पंडाल है जो की सफेद रंग का है बहुत सुन्दर पंडाल है। इस पंडाल के अंदर बहुत सारे लोग --

और बाहर एक गुब्बारा वाला खड़ा है जो गुब्बारा फुला के बेच रहा है।

खड़े हैं धुप में इस और यहाँ --

और एक आदमी है सफ़ेद रंग के कपड़े में जो खड़ा है।

यह एक ए.टी.एम. है ए.टी.एम. के ऊपर बोर्ड लगा हुआ है नील रंग का।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

इसकी स-सफ़ेद रंग की दीवार है इसके ऊपर बोर्ड लगा हुआ है सफ़ेद रंग का।

इसके ऊपर हाईटेक ऑटोमोबाइल्स लिखा हुआ है।

और लाल रंग के दुपट्टे ओढ़ रखे हैं।

इसमें कुछ लोग कुर्सी पे बैठे हुए हैं |

एक आदमी है वो लेटा हुआ है |